पीछे बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

ग्राउंड में और पीछे और भी बहोत घर दिखाई दे रहे--

और नीचे कारें खड़ी हुई है ग्रे रंग की वाइट रंग की एक बोर्ड लगा है जिस पर अर्जुन गेस्ट लिखा है।

जैसे कि इंस्ट्रूमेंट रखे हुए मशीनस है। जिस पर कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं।

एक स्टूल दिख रहा है। प्रिंटिंग व्हाइट कलर की मशीन दिखाई दे रही है।

डब्बे पड़े हैं जिनमें टॉफीस पल्स रखी हैं।

और निचे टेबल के नीचे भी सामान रखा बॉक्सेस में पिंक येलो और नीले रंग के बॉक्सेस है पड़े हुए--

यह एक सामने सोसाइटी जैसी लग रही है।

नीले रंग के पर्दे कपड़े से सजाया हुआ है।

शेल्फ बनी हुई हैं जिसमें बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं एक स्टूल जैसा भी बनाया हुआ है।

साइडों में बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और लाल रंग के ऑरेंज कलर के फूलों से डेकोरेट किया है।

लाल रंग की कमीज पहनी हुई है सिर पर कपड़ा बांधा--

उसमें एक आदमी खड़ा है डंडा जैसा लेकर--

और अंदर टिकट काउंटर बना है।

जहां बहोत सारी लाइट्स जल रही येलो वाली।